रूम का जो टाइल्स है वाई --

तीन-चार तल्ले की होंगी बगल में एक टावर है।

दिखाई नहीं दे रही है।